कुछ फ्रिज ब्लैक कलर के रखे हुए हैं और कुछ व्हाइट कलर की मशीने रखी हुई है।

पीछे एक पोस्टर लगाया गया है और तीन कुर्सियां रखी हुई है दीवारों पर सजावटें की गई है।

इस तस्वीर में एक रूम को दिखाया गया है जिसमें एक बेड है बेड के ऊपर दो वाइट कलर के तकिया रखे हुए हैं और एक बीच में है।

इस तस्वीर में एक रोड को दिखाया गया है जिस पर सामने ही एक बड़ी बस खड़ी हुई है।

सामने ही एक पेड़ लगा हुआ है जिस पर रेड कलर के फूल आ रहे हैं।

कॉलेज के ऊपर व्हाइट कलर वह पिंक कलर की पट्टियां बनाई गई हैं।